यहां पर पेंटिंग हो रही है।

यह एक वॉशरूम है यहां पर वॉश बेसिन लगे हुए हैं जो कि दो हैं और दो टोटियां भी लगी हुई हैं।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

एक दीवार पे दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं और एक दीवार पे एक पेंटिंग लगी हुई है।

यह एक मंदिर लग रहा है।

येलो कलर से पुती हुई है यहां की फर्श रेड और ब्राउन है।

मंदिर के बगल में घास भी लगी है।

एक आदमी खड़ा हुआ है।

स्टूल भी रखा हुआ है एक आदमी खड़ा है यहां पर एक लाइट लगी है और एक फैन लगा है।

तीन टेबल्स रखी हुई हैं जिस पर एक एक बॉटल रखी हुई है।

यह बजाज की दुकान लग रही है।

यह एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत सारी कार्स हैं जिसमें से सारी व्हाइट हैं।

यहां पर बहुत सारे झूमर भी हैं।